--और एक छोटा सा झील बनी हुई है और इसमे बीच मे गुब्बारा लगा हुआ है और आस पास वृक्ष दिखाई दे रहे है।

उन्होंने रेड कलर की टीशर्ट पहन रखी है हाथ में फोन लिए हुए है अम रेड अम व्हाइट एण्ड ब्लू कलर के कपड़े रखे हुए हैं।

एक मकान बन रहा है ऊपर मिस्त्री काम कर रहे है एक रेड कलर की शर्ट पहने हुए व्यक्ति

एक खड़ा हुआ है उसने सर पे कपड़ा बांध रखा है कुछ लकड़ियाँ रखी हुई है कुछ तार दिखाई दे रहे है पीछे कुछ मकान बने हुए है।

यहाँ पर एक झील दिखाई दे रही है जिसमें बोहोत सारी बोट्स तैर रही है कुछ लोग खड़े हुए है कुछ बोट्स में बैठे हुए है पीछे घर बना हुआ है उसपर --

एक बुकस्टाल दिख रहा है ऊपर व्हाइट कलर का बोर्ड है इसपे रेड कलर से नाम लिखा हुआ है अंदर एक दिल मडा हुआ--

लगा हुआ है एक कुर्सी रखी हुई कुर्सी का कलर व्हाइट है ऊपर केबल्स दिखाई रहे है पिछे वृक्ष लगे हुए है।